और यहाँ पर साइड में एक लाइट का खंभा लगा हुआ है।

बच्चे ने लाल कलर के जूते पहने हुए हैं और पेड़ों के पीछे पत्तियां दिखाई दे रही है पीछे सुखा सा मैदान है ।

सामने एक लेडी और एक जेंट्स आ रहा उसके हाथ में बैग है ।

पीछे एक अ सफेद कलर का बलफ़ जल रहा है।

खिड़कियों में परदे लगे हुए हैं। यहां पर एक पेड़ की शाखा दिखाई दे रही है और सामने भी बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यहाँ पर लेडिसो के कपड़े की दुकान है। बच्चों के भी कपड़े --

यहाँ पर अगरबत्ती जल रही है और कैंडल भी चल रहा है जहां पे --

यहां पे एक ऑफिस है और वहां बंद है उसकी जो चैनल गेट है वो --

बैठा हुआ है चट्टान की इधर-उधर की चट्टानें --

निकल रही हैं। पत्थर नीचे गिर रहे हैं और नीचे की साइड पे पेड़ और मकान दिखाई दे रहे हैं।

और अंदर काफी सारी दवाई रखी है। डेस्क के ऊपर कुछ --

बॉक्स रखे हैं और एक बड़ा सा बल्ब जल रहा है। पंखा लगा हुआ है जो सफेद कलर का दिख रहा है।

डेस्क भी बनाई गई है यहाँ एक ऑफिस रूम है।